बहुत ही झाड़ झाड़ियां हैं। कई सारे पेड़ हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं इस दृश्य में हमें एक गार्डन का सीन दिखाया गया है। जहाँ पे गार्डन --

रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए हैं।

और हम जानते हैं पहाड़ी इलाके में बहोत ठंड होती है और यहाँ पे कोहा सा भी नजर आ रहा है।

और यहाँ पे नाव में बैठे आदमी मछली पकड़ने का भी प्रयास कर रहे --

जहाँ पे कई लोग अपना फेस को निहारते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं।